उसके अंदर बहुत सारी सुंदर लाइटें लगी हुई हैं।

इसके अंदर सफेद और काले रंग के दो टेबल भी हैं।

सभी औरतों ने साड़ी पहनी हुई है सभी औरतों के हाथ में कुछ ना कुछ फल हैं।

जिसमें एक डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है।

एक आदमी ने लाल रंग की शर्ट पहनी है।

इसमें एक लाल रंग की बड़ा सा ये बिल्डिंग भी है।

इसके पीछे हरे रंग का एक कमरा भी बना हुआ है।